उसका ऊपर अमिताभ बच्चन का तस्वीर लगा है।

एक थो बच्चा है गाड़ी टला गाड़ी में और कपड़ा टंगा है।

और घर दिख रहा है बिल्डिंग बड़ा सा--

यहां पर बच्चा बहोत सारे बच्चे हैं।

उसका पास आदमी खड़े हैं कितना--